और कपड़े में कुछ लिखा हुआ है पीछे कुछ फ्रॉक दिख रहे हैं।

और नीचे एक तोलने वाला है और बहुत सारे चने भटूरे का डिब्बे हैं।

और नीचे माउस और कीबोर्ड दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक छत दिख रहा है जो कि नया बनाया जा रहा है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा बार दिख रहा है जिसमें ऊपर नाम लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें चार पांच बाईकें--

बहुत सारे घड़ दिख रहे हैं जो कि छोटके छोटके हैं।

और इधर दो टबे दिख रहे हैं एक लाल और एक बुलु रंग के हैं।

और इधर कुछ सेंटा क्लॉस वाला कपड़ा दिख रहा है।

इधर सब नारियल रख कुछ दिख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं एक बड़ा सा पोल दिख रहा है।

एक इधर कचड़े पेटी रखा हुआ है और नीचे कचड़ा गिरा हुआ है।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

रास्ता है जोकि बहुत हरा भरा दिख रहा है और इधर घास फूस बहुत सारा है।

पूल दिख रहे हैं और एक पेड़ दिख रहा हैं बड़ा बड़ा गेट दिख रहा है।

और नाम लिखे हुए हैं और इधर कुछ करकट भी हैं और खिड़कियां दिख रहा है।

इस चित्र में बड़ा सा दुकान दिख रहा है जिसमें गणेश सीड्स --